एक होटल का रूम लग रहा है जहां पे ग्रीन कलर के बहुत सारे चेयर है।

ब्लैक कलर का एक खंभा भी है।

एक शॉप हैं शायद ऊपर पे द सिटी और आधा नंबर दिखाई नहीं दे रहा है।

एक जिम है जहा पे बहोत सारे अनसुरमेन है एक्सरसाइज करने के लिए।

पंखा भी है और यह सामने वाले ब्लू वाले इंस्ट्रूमेंट पर कुछ लिखा हुआ भी है।

बड़ी धूल भी उड़ रही है शायद।

जिसका बस थोड़ा खराब हुआ है नीचे में सीढ़ी है जाने के लिए।

इस पिक्चर में यहां पर बहुत सारे कलाउडी कलाउडी वेदर है और पहाड़ है।

इस सड़क के बीच एक गाड़ी है जो ऑटो की तरह भी दिख रहे बस की तरह भी दिख रहे--

और आगे में बहुत सारे अलग अलग पोज में आदमी खड़े हैं किनारे में शायद एक एंकर है।

पीछे में टंकी है और पेड़ बड़े बड़े पेड़ भी हैं।

सड़क भी दिख रहे इलेक्ट्रिक पोल्स और वायर भी दिख रहे है।

लोहा भी दिख रहे हैं टीना भी दिख रहे हैं।

इस पिक्चर में कुछ बड़े बड़े पेड़ है।

और स्ट्रीट लाइट भी है और रोड में वाइट लाइन बने हुए हैं।

शादी का फंक्शन चल रहा है दूल्हा दुल्हन सजा हुआ है।

दो गमले दिख रहे हैं उनके दुपट्टे बान्ह रहे शायद कुछ कार्यक्रम चल रहा है।

बस में एक आदमी उठने के लिए कर रहे हैं और साइड में तीन आदमी है और बस ब्लू कलर का है ब्लू एंड वाइट मिक्स है।

खिड़कियां में आदमी दिख रही है।

यहाँ पर छोटे छोटे कैंप अ टेंट लगा हुआ है।

सामने में पेड़ दिख रहे है नीचे में सड़क भी दिख रहे है सड़क के किनारे में भी कुछ बना हुआ है।

चर्च है जहां पर पंखा लगा हुआ है।

ये शायद गाड़ी को पेंट या रिपेयर कुछ तो कर रहे है।

दो तीन टैंक भी है मशीने है।

बैठने के लिए हैंगिंग से चेयर बने हुए हैं बीच में टेबल भी है टेबल में भी कुछ रखा हुआ है।

ऊपर में बादल और आसमान भी दिख रहा है।

जिसके ऊपर कार्टून बॉक्स है उसके सामने ही एक स्विच बॉक्स है फोन चार्जिंग करने वाला।

टेबुल में बुक्स पड़ा हुआ है ब्राउन उसके नीचे वाइट वाला पेपर और एक कॉपी --

एक फुटबॉल ग्राउंड है जो कि शायद सर्कुलर शेप है।

अंदर में बहोत सारे प्लेयर्स लोग हैं।

साइड में आधा पेंट किया हुआ सड़क है शायद और नीचे में बहुत सारे पत्थर है बड़े बड़े पत्थर भी है पानी के बीच में भी।

और जीजस की फोटो मदर मैरी की फोटो टंगा हुआ है।

एक ड्रम भी है उसके ऊपर मग है और सब्जी के बस्केट भी है।

और टॉयलेट्स फ्लावर्स भी रखा हुआ है मिरर भी है।